हमे यहां पे नीले रंग का आसमान दिखाई दे रहा है और हमे यहां पे आस पास बहोत सारी हरियाली दिख रही--

हमे आस पास कुछ प्रेस की बॉक्स दिख रहे है हमे यहां पे--

दीवारों पे बहुत सारी पेंटिंग करी हुई है।

हमें यहां पे कुछ लाइटें जगी हुई दिख रही हैं।

और हमें यहां पे कुछ फैन लगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पे बहुत सारे टमाटर हैं।

हमें यहां पे एक मशीन दिख रही है हमें यहां पे एक लैपटॉप भी दिखाई दे रहा है।

जहां पे हमें टेंट के पास कुछ फूल लगे हुए दिख रहे हैं हमें यहां से एक नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

हमें यहां पे बाहर कुछ टायर पड़े हुए दिख रहे हैं।

हमें साथ में कुछ नॉनवेज की दुकान भी दिखाई दे रही है।

हमें यहां पे कुछ कुर्सियां लगाईं हुईं दिखाईं दे रहीं हैं।